यहाँ पर कुछ गमले नज़र आ रहे है गमलो का कलर हरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफी सारी बिल्डिंग नज़र आ रही है पीछे कुछ पेड़ नज़र आ रहे है पेड़ काफी बड़े दिखाई दे रहे है।

--और एक टिन शेड नजर आ रहा है जिसके नीचे एक बस खड़ी नजर आ रही है पीछे कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है पीछे कुछ लाइट नजर आ रही है ।

बोर्ड पर एस.बी.आई लिखा हुआ है सामने कुछ स्कूटीयाँ दिखाई दे रही है सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे है सामने गेट नजर आ रहा हैं।

यहाँ पर काफी सारी चीजे दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ सेल्फ दिखाई दे रहे हैं सेल्फ में बुक जमीन दिखाई दे रही हैं पीछे एक टेबल नज़र आ रही है।

यहाँ पर एक पंडित जी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर पूजा का सामान दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक थाली नजर आ रही है यहाँ पर कुछ लाइट दिखाई दे रही हैं।